कैफे के काउंटर में कॉफी रोस्टर्स लिखा हुआ है।

काउंटर के ऊपर काफी वर्ड लिखा हुआ है।

वॉल पे बहोत सारे चीजे लिखे हुए है।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

काउंटर में बहोत सारा लाइट लटका हुआ है।

इस तस्वीर में एक सरकारी ऑफिस दिख रहा है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में छत नजर आ रही है।

मूर्ति के चारो तरफ बहोत सारे पेर पौधे है।

एक बोर्ड नजर आ रहा है। जिसपे डीगारू स्टेट डिस्पेंसरी लिखा हुआ है।

गेट के सामने एक इंसान चेयर पे बैठा है।

बीच में एक छोटा सा घर बना हुआ है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में कमरा दिख रहा है।

ऊपर से सूरज की किरणें आ रही हैं।

पूरा स्टेज बैलून से डेकोरेट किया हुआ नजर आ रही है।

ऊपर दिया हुआ तस्वीर में रथ दिख रहा है।

दुकान के बाहर ऊपर में एक लाइट लगा हुआ है।

ऊपर में फैन लगे हुए हैं।

सामने में बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रही हैं।